यहां बहोत सारे फत्तर दिख रहे हैं और एक पुल भी बना हुआ है और डंडे भी बने हुए हैं। यहां बहोत सारा पानी भी है।

यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छी घास लगी हुई है ग्राउंड में और आंटी लोग बैठी हुई है और यहाँ बिल्डिंग भी बनी हुई हैं।

यहँ आपको हवेली दिख रही होगी छोटी सी। यहाँ एक चद्दर का चद्दर भी रखा है। यहाँ घांस भी लगी हुई है और छोटा सा एक पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको।

रोड गयी है वहाँ पर भी घास है और इस साइड लेफ्ट साइड मे गाड़ी दिख रही होगी आपको और एक घटरा भी है और तीन खंबे है उसमे झंडे लगे हुए है।

आपको एक हवेली दिख रही होगी यहाँ पिंक कलर की हवेली है दो मंज़िल की यहाँ ट्रैक्टर भी आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का और यह लाइट भी दिख रही है।

और नी दी परदे है।

यह जन संपर्क कार्यालय और यह बी_जे_पि का है और यह देख रहे होंगे बिल्डिंग में कांच वाला वो दरवाजा लगा हुआ है।

ये भी शायद मस्जिद है | आ गेट लगा हुआ है ब्लू कलर में यहाँ झनझनी सी टंगे हुए हैं।

एक महाविद्यालय है और एक गेट खुला है ब्लैक कलर का चौकीदार बैठा हुआ है और बाजू वाला बंद है और यहाँ एक झण्डा लगा हुआ है।

कार खड़ी हुई है और एक जे खम्भा दिख रहा है आपको एक जे रोड गयी है और यहाँ बोहोत सारी घास भी दिख रही है और पेड़ भी है।